एक सभा की है यहां पर--

जिसमें सिर्फ और सिर्फ युवतियां नृत्य कर रही हैं यह दक्षिण भारत--

सब्जी बेचने वाले लोग सब्जी बेचने के लिए आए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में--

जो कि इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है।

पत्थरों से बना हुआ है आईना भी लगा हुआ है दीवार पर पेंटिंग है तथा फ्लोर पर तीन पंखे लगे हुए हैं।

कतार में लगी हुई है आईना लगा हुआ है तथा लाइट की सजावट सही तरीके से की गई है।

अपने बाल बनवाने बाल कटवाने मालिश मसाज तथा--

स्वेटर पहने हुए हैं मफलर लगाए हुए हैं तथा एक ओवर ब्रिज के ऊपर--

ऊपर कुछ खम्भे है जो वायर को ऊपर रखते है बिजली के तारों को ऊपर रखते है।

का शर्ट पहने युवक तथा दो बच्चे भी--

एक बेसिन तथा दो खिड़की के साथ दो पंखे हैं बाल्कनी का भी रास्ता दिया गया है।

नीचे पार्ले जी उसके बाद मैगी उसके बाद कुछ चॉकलेट रखे गए है।

ऐसे जगह व्यस्ततम भीड़ भाड वाली रोड जिस पर ओवर ब्रिज बना हुआ है। उसके--

पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं इसे हिंदुस्तान पैट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड संचालित करता है।

थल घर में बनाया गया है।

जिसके आस पास बहुत सारे पेड़ तथा कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे ग्राहक भी खड़े हुए हैं दीवाल लाल कलर की बनाई गई है।

चेयर लगे हुए हैं तथा साइड में मंदिर है।

रायगढ़ रोड में स्थित हैं इसका नाम सी_जी जीरो फोर ढाबा है।